यह दृश्य श्री श्री आ एक सौ आठ राधा कृष्णा बलराम मंदिर का दिख रहा है काली --

यह दृश्य एक दूकान का है। जिसमे किताब ढेर सारा है। कॉपी कलम मार्कर है। इसमें तीन आदमी बैठे हुए है। एक मास्क लगाये हुए है।